और बहुत सारे गाड़ियां रखी है। हर उसके बगल हर पेट पौधा है।

एक भारती डाक है जिसमें जि जिसमें उ उसके अंदर ब गाड़ियां अ स्कूटी और एक औरत खड़ी हुई है।

और हरा घास जमा हुआ है अगल बगल बहोत सारे हरे भरे पेड़ पौधे है और फूल भी है।

एक रिजर्वेशन टिकट है जो रेसेर्वेस टिकट के नीचे जाली लगी हुई है और उसके बगल मे एक पोस्टर चिपका है और एक आदमी खड़ा है जो मास्क लगाया है।

होटल है और उसके बगल में ऐ साड़ी सेंटर है और एक कार जा रही है एक उसके सामने एक स्कूली खड़ी है।

एक भारतीय डाक है जिस भारतीय डाल में डिब्बा बना हुआ है जिसमे लेटर्स लेटर्स लिखे हुए है।

पोस्टर लगे हुए है और सामने ये बेठे हुए है।